और वेका निस हमते कुछ ढूँगा ढाँगा दिखेणलगयां भ्वां फण पत्ता दिखेण लगयां और हरी हरी घास दिखेण लगीं ।

इ तस्वीर मा जी हम देख सक्दु की यखम हम तें एक शादी कु टेंट दिखेण लग्युं और हम तें बिच्चम डी.जे वालू भी दिखेण लग्यूँ।